यह एक महाविद्यालय दिखाया गया हैं महाविद्यालय का नाम हैं शासकीय महात्मा गाँधी सनातक महाविद्यालय खसतीय जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़ दिखाया गया हैं बाहर में बहुत सारा बाइक स्कूटी खड़ा हुआ हैं।

किसी-किसी में खेल कूद हो रहा हैं इसी तरह पत्थल को काट कर बनाया गया हैं।

ये दुर्गा को जख्म मिला दिखाया गया हैं जिसमे रावण का पुतला बना कर जलाया जाता है।

बहुत सारे लोग मेला देखने के लिए आये हैं सब पुतला रावण का बनाया गया हैं पुतला में दस माथा दिखाया गया हैं।